आ लगी हुई है आइट साइड में भी है और रौंग साइड में भी है कुछ गाड़ियों का कलर--

एक बस के ऊपर सुसई नाम लिखा हुआ है सामने की तरफ बिलडिंग है बहोत बड़ी बिलडिंग है।

और धुप और परछाई भी यहाँ पर है ।

कुछ दुकाने दिखाई दे रही है कुछ दुकाने बंद है तो कुछ दुकान दुकाने खुली है।

यह ताज यह तस्वीर एक ताजमहल की है यहाँ पर एक कुतुबमिनार है।

सामने की तरफ घास वगेरा है और कुछ पौधे है विविध प्रकार के कटेरी वनस्पति जैसे पौधे है।

और पंद्रहा रुपय ऐसे दो बोर्ड लगे हुवे है।

एक व्यक्ति ने अपने हाथ में एक चीज़ अ ली हुई है।

यहाँ तस्वीर एक खाली मैदान की है यहाँ पर विविध प्रकार के ट्रक खड़े हुए हैं उनके--

बोनट निकली हुई है दो ट्रेक्टर यहाँ पर खड़े हे है।

यह तस्वीर एक मंदिर की है यहाँ पर कुछ रंगे कैंडल्स लगी हुई है।

सामने के तरफ एक रेती का डिग लगा हुआ हैं।

और यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस का डब्बा लगा हुआ है।